इस इमेज में मुझे एक छोटा सा पंडाल दिखाई दे रहा है।

और एक बेड जेसा कुछ दिखाई दे रहा हैं जो वाइट कलर का हैं।

और एक राउंड शेप का घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

इमेज में मुझे कुछ दीवारे दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है।

सारी बाइके दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर है और एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

और कुछ बलून्स दिखाई दे रहे है जो दिल सैप में है जो वाइट कलर के है और रेड कलर के है।

लड़का है जिसमें बहोत सारे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बाल कटवा रहे हैं।

और कुछ पौधे दिखाई दे रहें हैं जो ग्रीन कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं और कुछ लाइटें दिखाई दे रहीं हैं जो व्हाइट कलर की है।

इमेज में मुझे एक झरना दिखाई दे रहा हैं जिसमे बहुत सारा पानी भरा हुआ हैं जो ग्रे कलर का हैं और वाइट कलर का हैं।

और कुछ छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है और कुछ पत्थरे दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है।

इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो झोपड़ी से बना हुआ है।

और कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जो हल्के रेड कलर के हैं जिसमे पौधे लगा हुआ हैं जो ग्रीन कलर का हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ बेंचें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और ग्रे कलर की है।

ब्लू कलर की हैं और व्हाइट कलर की हैं और रेड कलर की हैं।

और बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो बैठे हुए है।

में कुछ लाइटें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और कुछ फोटोस बने हुए हैं।

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो बैठे हुए है और कुछ चेयरें दिखाई दे रही है जो रेड कलर की है और येलो कलर की है।

इमेज में मुझे बहोत सारे दुकाने दिखाई दे रही है इसमें कुछ शटर लगे हुए हैं जो ब्लू कलर के हैं।